जैसे की हम देख रहे है सामने बहुत बड़ा माकन बन रहा है और वो बहुत सारे बल्लिया लगी पड़ी है। बहुत सारे खिड़कियाँ दिख रहीं है।

पिले कलर की बॉले है और नीचे ब्राउन कलर की टाइले लगी पड़ी है और जो पर कुछ लिखा पड़ा है।

जैसे की आप देख रहे है सामने बहुत मोटा सा सफ़ेद सा पत्थर दिखाई दे रहा है और काला सा पानी दिखाई दे रहा है हरे- हरे से पेड़ दिख रहे है उसमे हरी-हरी सी पत्तियाँ दिख रही है।

जैसे की आप साम देख रहे है सामनेएक बहुत बड़ा पुल दिखाई दे रहा हैऔर वो काले रंग का है और उसमे लोहे की रैलिंग बनी हुई है नीचे की तरफ बहुत सारा पानी रहा हैऔर पीली-पीली सी मट्टी दिख रही है।